यहाँ पे पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है।

पढ़ाई होती है बहुत सारे --

टू वेस सड़क है।

इसमें बहुत सारे चीज दिए हुए रहते हैं।

यहाँ पे बहुत सारे लोग आए है ।

जैसे की बहुत पुराने-पुराने मूर्तियां रखे गए हैं।

दूर-दूर से लोग आते है।